अंदर कुछ बिस्किट वगैरह कुछ सामान रखा हुआ नजर आ रहा है सामने तरफ मुझे दो चेयर नजर आ रही है ब्राउन कलर की बनी हुइ ।

साइड की तरफ एक बाइक खड़ी नजर आ रही है और जाली नजर आ रही है रुई कि बनी हुई और एक पोल नजर आ रह है जो व्हाईट कलर का नजर आ रह है।

सामने के तरफ एक रस्ता नजर आ रहा है रस्ता के राइट साइड मुझे कुछ बाईक कुछ एक्टिवा खड़ी हुई नजर आ रही है। दुर कि तरफ़् मुझे एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है और उसके दुर एक बाईक नजर आ रही है।

काफी सारे काले रंग के फैन नजर आ रहे हैं उपर कि तरफ क मौसम काफी अच्छा नजर आ रहे हैं नीचे कि तरफ़् मुझे एक रोल्लर नजर आ रहा है।

कि तरह मुझे एक छोटा सा बच्चा नजर आ रह है नजर आ रही है।